ये भी एक स्कूल नजर आ रहा है जिसका कलर कहीं पर ग्रीन है कहीं रेड कलर का बॉर्डर है कहीं वाइट है कहीं येलो है कहीं पर ऑरेंज है।

ये एक बिल्डिंग है जो जिसका राउंड में इसका शेप बना हुआ है एंड येल्लो और रेड येल्लो बॉर्डर है इसका।

और आसमान का कलर वॉइलेट ब्लू पिंक व्हाइट यह सब कलर नजर आ रहा है।